इस इमेज में हमें एक बहुत बड़ी सड़क दिखाई दे रही है और सड़क के ऊपर हमें एक ऑटो चलता हुआ दिखाई दे रहा है जो की काले रंग का है।

इस इमेज में हमें बहुत बड़ा पिंजरा दिखाई दे रहा है उस पिंजरे के अंदर बहुत से तोते दिख रहे है जो की रंग बिरंगे है।

वहां पे बहुत से तोते बंद --

दादी दिख रही है जो सफेद कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रही है वहाँ पे स्कूटी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है जो की --

इस लड़की ने बहुत से ज्वेलरी पहने हुए हैं जो चमकते हुए नजर आ रही है।

ट्रैक्टर दिख रहा है जो कि खेत जोतता हुआ नजर आ रहा है वह ट्रैक्टर एक पेड़ के साइड में खड़ा दिख रहा है और ट्रैक्टर का रंग --

आ रही है वहां पर बहुत से अलग-अलग तरह के कुर्सियां और अलग-अलग तरह की चीजे लगी दिखाई दे रही है।

जो कि उस नदी को देख रहे है वहां पे पहाड़ पे बहुत से चट्टानें और --

बहुत सारे हरे-भरे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत ऊंचे और बड़े-बड़े दिख रहे हैं।

एलिवेटर दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर से नीचे जा रहा है वहां पे बहुत सारी लाइटे लगी है जो कि सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

वो कार के ऊपर हमें बहुत से फूलों के गुलदस्ते --

व उसमें हमें गुलाब के फूल भी दिख रहे हैं जो की लाल कलर की नजर आ रहे हैं वो कार बहुत बड़ी है तथा वो सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

यह इमेज में हमें एक छोटा-सा बकरी का बच्चा दिखाई दे रहा है जो की घास के मैदान में आराम करता हुआ नजर आ रहा है।

और स्लेटी कलर के मशीन बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है तथा उस ट्रैक्टर के ऊपर रखी गई है जो कि नीले कलर का नजर आ रहा है।